ये पिक्चर किसी कैंटीन के अंदर का है। यहाँ पर एक बड़ी मेज पड़ी हुई है। कई कुर्सिया पड़ी हुई है और मेज में कई खाने पीने के सामान रखा हुआ है।

लाल रंग की दीवारे हैं।

ये किसी अस्पताल का पिक्चर है। इसका नाम जनता अस्पताल है और ये विशेष रूप से जच्चा बच्चा केंद्र है।

ये पिक्चर किसी जनरल स्टोर का है यहाँ पर कई सरे ग्रोसरीस के सामान रखे हुए हैं।

यहाँ पर ओब्यस्ली बुकस रखी हुई हैं कोपिस हैं इसके अलावा केरेम बोर्ड्स बाहर रखे हुए हैं बेचने के लिए और एक व्यक्ति कस्टमर के तौर पे दुकान के बाहर खड़ा हुआ है।

ये पिक्चर ए.टी.एम. के बाहर का है। ये एस.बी.आई. बैंक का ए.टी.एम. है। ए.टी.एम. के बाहर एक लम्बी लाइन लगी है।